इ एक मकान है जो ओ ओ जहाँ पे नया-नया कुर्सी रखा हुआ है ऊपर पे लाइट लगा हुआ है ।

ये एक गुफा है जो की इसमे हैं इसमे रास्ता है और एक गेट भी है इ बहुत पुराना गुफा भी है इसमें खिड़की भी है ।

यहाँ पर एक गार्डन है जो कि दूर से एक लाई एक लाइट लगा हुआ है। बीच में आदमी भी है और गार्डन में --

ऊपर से एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें लाल फूलो है दिखाई दे रहा है हरा पत्ता भी है ।

और एक आदमी भी जा रहा है। दोनों साइड में पेड़ है जो कि एक तरफ से नारियल का पेड़ भी है।